यहाँ पर बच्चे खेल रहें हैं इन बच्चो में से कुछ लड़कियाँ हैं।

और इसके के आसपास --

और आस-पास एक हरे है सामने एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के --

बता रहा है ये खेत है खेतों में कुछ फसले उगाई है।